यहां पे पोस्ट में बहुत मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है जो पार्क के जैसा दिखाई दे रहा है।

यह एक ग्राउंड का चित्र दिखाई दे रहा है तथा छह गोला गोला चारकोन दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक घर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बहुत बड़ा सा घर का हॉल दिखाई दे रहा है।

होटल के बाहर पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है झिंगा लाइन होटल लिखा गया है।

यह एक पार्क के जैसा चित्र दिखाई दे रहा है।

उसके बगल में एक और दुकान दिखाई दे रही है जो गाड़ी बनाने वाला दुकान दिखाई दे रहा है।

यह एक स्कूल का चित्र दिखाई दे रहा है जिसके अंदर प्रोग्राम हो रहा है।

बी_डी_डब्ल्यू_आर_एल_डी स्कूल का नाम चित्र दिया गया है तथा फूलों से सजाया गया है।

पांच स्टेज के ऊपर खड़े हैं और दो नीचे हैं।

वहा पे एक दो व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे उजला रंग का पर्दा दिखाई दे रहा है।

बाहर में कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

एक रोड में बाइक भी दिखाई दे रहा है।

यह एक स्टेज प्रोग्राम का चित्र दिखाई दे रही है।

यहां पे दो डमरू भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो चार बल भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे तीन चार व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर बहुत सारे लाइट भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक बैठने वाला टूल भी दिखाई दे रही है जो नीला कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पर सीढ़ी दिखाई दे रही है जिस पर रेलिंग लगा हुआ है।

दुकान के अंदर टेबल पर एक कम्प्यूटर भी दिखाई दे रहे है और एक वेट मशीन भी दिखाई दे रही है।

यह एक स्कूल का चित्र दिखाई दे रही है।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

दुकान के बाहर एक बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे सूर्य का प्रकाश का लाइट भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है ।

तालाब में पूरा पानी भरा हुआ है ।

आलू का हल्का हल्का छिलका भी ऊड़ा हुआ है।

जो उजला और पिला रंग का पेंट किया हुआ हैं।